यह एक पुस्तकालय है जोकि डबल मंजिल बिल्डिंग है।

क्लास है जहाँ पर एक टेबल है और एक चेयर रखी हुई है और रेके बनी हुई है जिसमें पिंक कलर पेंट है और कांच लगे हुए हैं।